ये बहुत बढ़िया बस स्टैंड है यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं बस में ट्रावल करने के लिए और ये --

अलग अलग जगाओ से लोग आते हैं क्योंकि ये बढ़िया पार्क है और बहुत सारे लोग आते हैं इस पार्क मे घूमने के लिए क्योंकि ये --

पानी में बहुत कुछ है यहाँ पे बहुत सारे ढ़ेर सारे चीज हैं खेलने कूदने के लिए बच्चों को भी बड़े के लिए भी।

इधर बहुत सारे लोग आते हैं। इधर चर्च है। इधर बहुत सारे लोग आते हैं।